बिल्डिंग सामने पार्क है पार्क बहोत खूबसूरत है और बहोत सारा पेड़ पौधा है।

और छोटे-छोटे पौधे दिख रहें हैं। आसमान में बादल हैं और कुछ लाइट लगी हुई हैं कुछ पत्थर रखें हुए हैं।

यह काफी जैसा है वहां दो तीन लोग खड़े हुए हैं।

जिनको लेडिस का कपड़ा पहनाया गया है और वो कलर्स के नाम से शॉप है और शॉप के अंदर कुछ लाइटें जल रही है।